इसमें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जो कि रंग बिरंगा दिख रहा है इसमें बहोत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं।

--कुर्सियां भी रखी हुई हैं-- सलोन में बाल बनाए जाते हैं दाढ़ी व बाल बनाए जाते हैं यह पुरुष वर्ग का सलोन दिख रहा है।

इसकी दो हेडलाइट दिखाई दे रही है और इस पर वेलकम भी लिखा हुआ है।

इस में ब्लू कलर की लाइट भी लगी हुई हे यह कैफ़े नया लग रहा हे।

पीछे कि तरफ खेत जैसे खेत दिखाई दे रहें हैं और यह रोड पैर खड़ी हुई है यह रिख्शा सामान बेचने के काम आती है।

यह किसी बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे क्रिस्चन का क्रॉस मार्क भी लगा हुआ है।

यहाँ पर खेत ही म्खेत दिखाई दे रहे हे यहाँ रोड बना खेत हे इउस में बहुत बड़ा खेत हे इसमें थोड़ी परछाई दिख रही है

पोधे लगे हुए हे जिस में पीले रंग के फुल दिखाई दे रहे हे सामने सकरा सा रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा हे यहाँ हरियाली ज्यादा दिख रही हे ।

पानी हमारे लिए अभूत उपयोगी होता हे यहाँ पेचे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हे ।

बस के दरवाजे बंद हे और यह बस सफेद कलर की दिख रही हे ।

यहाँ एक पीछे की तरफ घर दिखाई दे रहा है और आगे की तरफ कुछ कार खड़ी हुईं है।

यहाँ पर एक आदमी भी है जो कि कुछ कम कर रहा है यहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा है सफेद कलर की कार के दरवाजे खुले हुए दिखाई दे रहें हैं।

कुछ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहें हैं यहाँ पर एक घड़ी भी है जिसमे समय बताया जा रहा है।